यहाँ पे हमें सामने एक टीवी दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ और भी पोस्टर लगे हुए हैं।

यह एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है जिस पे सफ़ेद बादल छाये हुए हैं यहाँ आसपास में और भी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

जिनमे कुछ सामान रखा गया है आस-पास हमें कुछ ईंटे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं निचे हमें फर्श दिखाई दे रहा है कुछ बाउंड्री वॉल्स दिखाई दे रही --

यहाँ हमें कुछ बिल्डिंग नजर आ रही है बाहर हमें कुछ बाउंड्री वॉल्स नजर आ रही हैं कुछ बिजली के खंभे नजर आ रहे हैं जिनमें से तार होती जा रही है बहार हमें कुछ और भी रस्ते नजर आ रहे हैं पीछे हमें कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं कुछ और भी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।

यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ हमें एक तालाब दिखाई दे रहा है आस-पास हमें कुछ नाव दिखाई दे रही हैं जिनमे बोट करने के लिए यहाँ पे लोग बाहर खड़े हुए हैं यह एक पयर्टक स्थल दिखाई दे रहा है पीछे हमें कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जिनमे कुछ --

ये देखो छोटी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिजली के खम्बे दिखाय दे रहे हैं यहाँ पे कुछ और भी बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक ए.टी.एम. है इसके सामने हमें कुछ और भी पोस्टर्स लगे हुए नजर आ रहे हैं ऊपर सिंटेक्स टंकी रखी हुई हैं।

हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे हमें एक बैनर बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर बैनर बोर्ड पे बै-बै हमें अ बिल्डिंग का नाम दिखाई दे रहा है इसके आसपास हमें कुछ और भी --